ये फोटो देखने में अति सुंदर अमेजिंग और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये फोटो देखने में बहुत ही अति सुंदर--

देखने में इसमें बहुत सारे लोग है जो कि गिन के बताते हैं एक दु तीन चार पान छे सात लोग है।

यह एक मुस्लिम का पर्व त्यौहार का रूम है यहां पे मुस्लिम लोग अल्लाह हू अकबर शुक्र का शुक्र पढ़ते हैं।

इसमें बहुत सारे नवाज लोग पढ़ने आए हुए हैं जो की फोटो देखने में अमेजिंग है और अति सुंदर है जो अच्छा है।

यह घर का हो सकता है जिसमें चिड़ियाघर में हिरन यह सब कुछ रह--

यहां पे तीन लोग हैं जो की कार्य कर रहे हैं इसमें इमेजिंग लग रहा है इसमें छड़ है इसमें ब्लैक कलर का मिट्टी है सामने सामने घर हैं जो कि भला बड़ा है।

जिसके नीम बगल में हाथी है जो की अच्छा लग रहा है इमेजिंग लग रहा है फोटो दिखने में।

घर में ए_सी लगा हुआ हैं जो देखने में फोटो इमेजिंग है और बहोत ही सुंदर लग रहा हैं।